ये तो लग रहा है कि टावर है टावर ही है।

ये एक होटल है बहुत वी_आई_पी होटल दिख रहा है इसमें एक स्टॉप भी दिख रहा है।

ये तो लग रहा है अंधेरा सीन दिख रहा है।

अ नसीसा जहान करके लिखा हुआ है एक--

और चर्च है आगे वाले लग रहा सब फादर्स हैं सिस्टर है।

यह तो पेट्रोल पंप जैसा दिख रहा है लग रहा है पेट्रोल पंप है।

और एक कार लगी हुई है जो कि कार का नंबर जो है--

ये तो एक ऑफिस टाइप का दिख रहा है बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

आगे में दो ताला लटका हुआ है।

अब बच्चे लोग को बहुत सारा सामान उन लोग को मिला है प्रोजेक्ट बनाने के लिए।

अ एक बच्चा सर पकड़ के दिख रहा है एक दूसरे को दिख रहा है।

तीन पीस दिख रहा है मुझे--

और चटनी तो है ही नहीं ।

ये मतलब एक साइकिल दो मोटर दो एक एक तरफ दो मोटरसाइकिल एक तरफ एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है दो व्यक्ति--

ये एक होटल है जिसमें एक उधर बेड लगा हुआ है एक तकिया भी दिख रहा है।

एक छोटा सा उधर टेबल भी दिख रहा है एक टौली भी रखा गया है।

और बहुत बड़ा का बोलते हैं जो दीवाल में सेट करके जो एल_सी_डी टी_वी भी लगा हुआ है।

यह एक जंगल टाइप का है उधर हरा हरा सारा पेड़ दिख रहा है इधर बहुत सारा जानवर दिख रहा है।

क्या बात है यह तो मॉल है।

सिर्फ एक खूबसूरत का कॉफी का दुकान दिख रहा है और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे--

ये एक मोहल्ला टाइप का दिख रहा है।

चार पांच ब्रिज दिख रहा है और उस पट्टी पानी दिख रहा है और इस पट्टी बल्लू टाइप का मट्टी दिख रहा--

अंदर में रेड रेड कुछ दिख रहा है इधर से एक सीढ़ी दिख रहा है।

एक मकान के अंदर लग रहा है कि किसी का फोटो वगैरा लगा के कोई देवी देवता है या कोई चीज का फोटो है जिसको माला बड़ासा माला पहनाया गया है।

जो कि उसमें व्यक्ति लोग घूमते हैं फिरते हैं रेस्ट करते है।

कुछ लोग लेटे हैं लग रहा है कि चेयर पे कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग एक जगह दो-तीन लोग खड़े होके बात कर रहे हैं इधर हरा-भरा सा पेड़-पौधा लगा हुआ है।

फूल वगैरह उधर बड़ा सा बिल्डिंग --

एक व्यक्ति अपना बॉडी बना के अंदर में खड़ा है उसका भी बॉडी बिल्डर की तरह शरीर दिख रहा है हां खूबसूरत सा चेहरा ढका हुआ है।

एक कोट टाइप का है दो शेरवानी है।

और बस छोटा सा मॉल है लग रहा कि ब्रांडेड कोई मॉल है।

ये तो लग रहा है कि अपना फोटो खींच रहे हैं उधर एक व्यक्ति जा रहे हैं और पता नहीं अंदर में क्या है।

एक बड़ा सा कोई कंपनी या फैक्ट्री टाइप का दिख रहा है।

है एक बच्चा ऊपर में चढ़ के बैठा है तीन--

खेत है धान का खेत बीच में एक मेड़ है।

इस तरफ भी धान लगाया गया है इस तरफ भी धान लगाया गया है और अंदर में पानी भी दिख रहा है सुंदर है।

बहुत सारा सामान सजा के इसमें रखा गया है।

जेन को करके एक बोर्ड यहां लगा हुआ है।

उधर उस पट्टी में बड़ा-बड़ा अपार्टमेंट टाइप का घर दिख रहा है।

ये कंप्लीट पेस्ट शॉप का दुकान है।

इस पे लिखा हुआ है उधर तो एक आधा लिखा हुआ है सिद्धार्थ डॉक्टर --

रेड कलर का इधर पांच छह लोग खड़े है।

हां कुछ मांग रहा है दुकानदार से--

ये तो लग रहा है कोई प्रोग्राम हो रहा है।

और एक तराजू रखा गया है जिस परे तौला जाता है।

ये लग रहा दुकान है बहुत सारा सामान यहां बिकता है।

एक इधर खड़े हैं इधर जो खड़े हैं लग रहा है कि वो डबल दिख रहे है।

अच्छा दिख रहा है इधर पेड़ है उधर पेड़ है।

यह लैब है जहां पे जांच वगैरह किया जाता है।

तो फल का बहुत बड़ा दुकान है।

और तरह-तरह के फल इसमें सजाया गया है ऑरेंज है सेब है केला है बनाना है।

ये लेबर मिस्त्री अपना काम में लगे हुए है।

खड़े हैं एक काउंटर --

उधर दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं उधर दो दोस्त जा रहे है।

अंदर में भी चेयर पे कुछ लोग दिखाई दे रहे--

ये भी पार्क है बहुत खूबसूरत है।

आसमानी कलर का गिलास जो पलट के रखा गया है सुंदर एरिया --

ये बहुत सारे लोग एक टेबल पे मतलब वो लिख रही है लाइन लोग लगाए हुए हैं भीड भड़ा का एरिया है।